मोटरबाइक की आइना दिखाई दे रही है।

बीच बीच में कहीं पे मीडियम साइज के पेड़ भी लगे हुए हैं।

सामने सफेद रंग का एक फाउंटेन बहुत सुंदर ढंग से खड़ा है।

धुंधले धुंधले पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इसकी ऊपर की रेड का रंग काला तथा साइड की रेडों का रंग पीला है।

एक व्यक्ति अंदर खड़ा दिखाई दे रहा है कुछ लोग अंदर बैठे हुए है।

तस्वीर में सामने एक इमारत दिख रही है।

यह दस बजे की इंतजार करने की जगह जैसी लग रही है।

सामने बहोत सारे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

यह तस्वीर में सामने एक दीवार दिखाई दे रही है जिसका रंग हरा है।

यह तस्वीर किसी बगीचे या नर्सरी की लगती है।

उपर में भी कुछ छोटे छोटे ईट के दीवार खड़े किए गए हैं।

नीचे बहोत सारी गिट्टी का ढेर रखा गया है।

सभी के कपड़े कई प्रकार के रंग से रंगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति हाथ में ड्रिल मशीन पकड़े दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो वर्कर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

दूर पीछे बड़े बड़े ईमारत दिख रहे हैं जो बेहद सुंदर लग रहे हैं।

ऊपर सीलिंग पर लाइट्स लगी हैं।

नीचे कुछ कप पलट कर भी रखे गए हैं।

इस तस्वीर में बहोत सारे पीले फूल दिखाई दे रहे हैं।

बाई तरफ साईं बाबा की फोटो है जिस पर माला लटका है।

यहां पर बहोत सारे लोगों की भीड़ दिखाई जा रही है।

चट्टान के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति का जूता दिखाई दे रहा है।

और कुछ बड़े बड़े खंभों में भी सफेद लाइट जल रही है।

जिस पर भारतीय डाक लिखा है।

इसका भी रंग सफेद तथा मस्टर्ड येलो है।

चेस लूडो इत्यादि खेल की वस्तुएं हैं।

दाईं तरफ एक व्यक्ति अपने बाइक के साथ खड़ा है।

यह तस्वीर किसी रेस्टरां की लग रही है।